इधर कार खड़ी दिखाई दे रही है आजू बाजू--

इधर उधर घूम भागते हुए दिखाई दे पहाड़ वहाड़ बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे रंगीन कलर के पर्दे वर्दे लगे दिखाई दे रहे हैं चुन्नी उन्नी का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई--

कई सारी चीजें लगी है लगी हैं देखो व्हाइट कलर का गोल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है सामने।

एक नदी बनी हुई दिखाई दे रही है जिस नदी में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आजू बाजू--

सामने को एक रोड टाइप बनी हुई दिखाई दे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक फैक्ट्री बनी हुई दिखाई दे रही है जिस फैक्ट्री में--

सामने की ओर कई सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे आजू-बाजू कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे लगे दिखाई दे रहे दिन का समय दिखाई दे --

दिन का समय दिखाई दे रहा है नीले कलर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।